जिसमें हल्का हल्का ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है।

गार्डन भी बना हुआ है जिसमें आधे में घास और आधे में मिट्टी दिखाई दे रही --

ये फोटो किसी हॉस्टल का लगा रहा है।

ये फोटो किसी के घर का लग रहा है।

खुला आसमान है और ये घर रेड और क्रीम कलर से पेंट किया गया है।

बोर्ड पर संकल्प कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक दीवार जैसे बनी हुई है जिस पर बनस अमूल बनस डेरी लिखा हुआ है।